ये एक बहोत बड़ा ऑफिस है कॉरपोरेट ऑफिस ।

हॉल फॉर रेंट यहां पर हॉल भी रेंट पर दिया जाता है।

एक बरगद का पेड़ है एक नीम का पेड़ है।

यहां पर सभी डॉक्टर के पास आते हैं और यहां बहोत सारे घमले है यहां--

ये एक टी_वी की दुकान है जहां पर अलग अलग वैरायटी के टी_वी है।

ये एक बड़ा सा कॉर्नर है। इसमें फुटबॉल रखी है। टी-शर्ट रखी है।

और चर्च में बहुत सारी महिलाएं आई हैं ये सारी महिलाएं--